ग्रिल का दरवाजा खुला हुआ है| ग्रिल को ब्लैक कलर से कलर किया गया है।

और दूर जाके एक आदमी खड़ा है। उसके अंदर बहुत बड़ी मकान--